एक पार्क की लगा रही है जिसमे कुछ झूले लगे हुए है और--

बिल्डिंग विल्डिंग की फोटो हैं।

और रितिका क्लास पग है जो है वो रितिका है।

फाइव स्टार होटल की बाथरूम की फोटो लग रही --